ये एक नर्सरी है जहां पर बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है। अरमान फ्लावर नरस--

और बाहर कुछ गमले पड़े हुए हैं जो की लाल पीले हरे चिट्टे कोका कोला रंग के हैं।

एक ट्रक खड़ा हुआ है सामने एक पौड़ियां भी बनी हुई हैं।

खाने में अलग-अलग तरह के खाने की चीजें पड़ी हुई हैं कुछ पैकेट पड़े हुए हैं कुछ जूस के डब्बे पड़े --

पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि लाल रंग का है एक ब्लैक रंग का बोर्ड लगा हुआ है खिड़की बनी--

छत पर बहुत सारे पंखे चल रहे हैं।

और एक मंडप भी सजा हुआ है बाहर हरे हरे पेड़ भी लगे हुए हैं।